चेक में भी है सिंपल में भी है प्लेन यूनिफार्म का भी कपड़ा लगता है ब्लैक अउ पिंक और बाकि वाईट क्रीम --

स्कूल है बच्चे लोग कुछ बना रहे है लगता है कुछ केक पेपर है।

भारतीय सर ग्राहक सेवा केंद्र लोक सेवा केंद्र एस.बी.आई स्टेट बैंक है बैंक है थाना --

नई करते है का इन लोग एकदम ए_टी_एम है छोटा सा है ऊपर बोर्ड वोड भी लगा है ए_टी_एम का अगल बगल दुकान भी है फर्स से टाइल्स भी बैठा है अच्छा दिख रहा है। शायद

कहाँ का नदी है भाई महानदी है की सागर है? कितना मस्त दिख रहा है मतलब दोनों है सब है कितना पानी है सब बोहोत --